एक तराजू दिखाई दे रहा है बच्चो के लॉलीपॉप रखे दिखाई दे रहे है के और तऱ्हा तऱ्हा का सामान दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं पानी काफी साफ सुंदर और स्वच्छ दिखाई देता है।

दिखाई दे रहीं हैं छोटी छोटी चट्टानें भी दिखाई दे रहीं है पहाड़ों पे पेड़ पौधे नजर आ रहे है पानी काफी साफ़ और शीतल दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक जंगलं का दृश्य दिखाई गया है जहाँ एक व्यक्ती एक छोटासा फुल हाथ में लेकरं दिखा राहा है तरह तरह तरह के पेड जडीबुटीया जंगलॉमें लागए जाती है और हमें मिल जाती है और बिमारी में काम आती।

इस चित्र में हमे एक सभागार का दृश्य दिखाई दे रहा हैं जहाँ किसी प्रोग्राम की--

पानी में फसी एक कार दिखाई देती है। एक बडी लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है। चारो तरफ पानी हि पानी है।

मैदान में चारो तरफ घास दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक हवाई जहाज खड़ा दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।